ये एक परचून की शॉप है। यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। इसकी शॉप में काफी सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं।

ये मेडिकल स्टोर है जिसमें पंखा लगा हुआ है | सामने बंदा बैठा हुआ है और इसके काउंटर पे कैंची रखी हुई है कैलक्यूलेटर रखा हुआ है पेन रखा हुआ है डायरी रखी हुई है।